मुझे यहां पर एक लोहे का बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर कुछ बच्चे और पुरुष दिखाई दे रहे हैं।

आसपास में कई सारे पेड़ पौधे भी यहां दिखाई दे रहे हैं।